''बहुत ही बच्चे महजूद में हैं । यहाँ पे देख सकते हैं मैम भी आई है सर भी आये हैं ।''

यहाँ पे दर्शको के लिए अच्छे से टेबल लगाये गए हैं।

आप देख सकते हैं पहले का बोर्ड कैसा था। अभी डिजिटल बोर्ड लगाये गए हैं। यहाँ पे अब पढ़ाई होते हैं।

आप देख सकते हैं अगर खाली है उसका चित्र लिया गया है ताकि अच्छे से दिखाया जाये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होते हैं अच्छे से सजाया गया है।

यह शिवलिंग है शिव जी का यहाँ पे अच्छे से पूजा की जाती है। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होते हैं। आप जान सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग है उसके वहाँ पे देख सकते हैं। शिव पार्वती जी का वहाँ पे एक और शिवलिंग है।

दो सर पढ़ाते हैं एक फिसिक्स एक केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जहाँ के बच्चे को अच्छे से समझाते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।

जैसे की इसे कहा जाता है चिल सुट्टा बार इसका बैनर भी लगा हुआ है बार मे चिल सुट्टा बार का।